पीछे दीवार दिख रही जालीदार जो कि बहोत अच्छी लग रही नीचे हरी- हरी घास दिख रही है जो कि काई -काई जमी हुई लग रही है जो की बहोत ही प्यारी लग रही है पीछे हमको दिवारे दिख रही है खंडहर तरह की--

जैसा की हम देख सकते हैं सामने हम को किराने की दुकान दिख रही हैं किराना की दुकान में हम को वो सारे किराने का सामान दिख रहा हैं जो की हम को डेली यूज़ का सामान दिख रहा हैं जो की बहोत ही अच्छा दिख रहा हैं हमको शरट दिख रहा हैं जो की ऊपर खुला हुआ दिखरहा हैं।

राइट साइड जाली लगी हुई दिख रही है जिसमें सफेद कलर की जाली दिख रही है काली कलर की जाली दिख रही है जो की बहोत अच्छी लग रही है पीछे लाइटिंग दिख रही है। जो की सफ़ेद कलर --

इसमे स्टेशनरी का सामान दिख रहा हैं जिसमे पेन बहुत सारे दिख रहे हैं मार्कर दिख रहे हैं हाईलाइटर दिख रहे हैं बुक्स दिख रही हैं कुछ कॉपी किताब दिख रही--

जैसा की हम देख सकते है सामने हमें सुंदर नज़ारा दिख रहा है और बहुत ही प्यारा नज़ारा दिख रहा है एंट्री गेट दिख रहा है एंट्री गेट अंदर जाने क--